स्प्रे मशीन रखा हुआ है स्प्रे कर रहा है एक आदमी ।

आ बहुत महान पर्ब माना जाता है इसमें बहुत अच्छा से किया जाता है बहुत सुन्दर-सुन्दर लोग कपड़ा पहना हुआ है पानी में खड़ा है अर्घ दे रहा है अच्छा लग रहा है।

पूरा पानी लबालब है बहुत सुन्दर पानी दिख रखा है फ्रेस पानी है नहाने जोग्य है ऊपर आसमान नीले कलर का दिख रहा है बहुत दूर-दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है सिर्फ पानी दिख रहा है पेड़-पौधे हैं हरे-भरे दिख रहा हैं ।

देखने मे अच्छा लग रहा है।